का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक कॉपी किताब वाला की दुकान छा दिखेणी।

का अनुसार यख माजी जो छा हमते एक मिकैनिक ह्वाला की दुकान छ दिख्येणी।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते कई सारा माछा छन दिखेणा।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते कई सारी लिच्चि छन दिखेण लगीं यख मा जी यु लिच्चि जु छन यु लाल रंग की छन।